पिलर खड़े हुए हैं छत डला हुआ हैं निचे दीवारो का कलर ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा हैं और ब्लैक कलर का दरवाजा दिखाई दे रहा उसमे एक खिड़की लगी हुई हैं खुला आसमान दिखाई दे रहा हैं और सफ़ेद कलर का हैं पेड़ पौधे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं।

कुछ कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं फूल लगे हुए हैं गुलाबी कलर के हैं यहाँ पर लोहे-लोहे की जाली लगी हुई हैं यहाँ पर खम्बे गढ़े हुए हैं कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर के हैं।

सीन दिखाई दे रहा हैं। यहाँ पर एक कुत्ता बैठा हुआ हैं जो आधा ब्लैक और आधा ऑरेंज कलर का हैं यहा ये कुत्ता यह देखने मे लग रहा है कि ये दिन का सीन --